पाइप लगाए गए हैं जिसके ऊपर लाइट लगाया गया है। देखने मे बोहोत अच्छा लग रहा है।

टोकरी दिख रही है। टोकरी के अंदर बड़ा-बड़ा पपीता दिख रहा है जो कि पीले रंग का है। उसके सामने ही --

सफेद लाल रंग कि एक सीढ़ी बनी हुई है। सामने में ही एक बाइक लगी हुई है जो कि पूरी तरीके से नही दिख रही है।

भूरे रंग का है उसका तना --

नदी के ऊपर और नदी का पानी बहोत ही सुंदर लग रहा है। सूरज की किरणें सीधे नदी के पानी पर पड़ रही हैं और यह --

यहाँ एक नाव है जिसमे तीन व्यक्ति बेठे हुए हैं जिसमे से एक महिला है और सभी लाइफ प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं। जैकेट का रंग है --

रखा गया है जोकि हरे रंग का है और एक कटोरी में हरे रंग की चटनी भी रखी गई है।

सामने एक व्यक्ति खड़ा है जोकि हरे रंग का जैकेट पहना है और काले रंग का शर्ट पहना हुआ है और सफेद रंग की ऊपर टोपी पहनी हुई है। उसके पीछे --

यहाँ पे बोहोत भीड़ लगी हुई है। कुछ बच्चे कुछ पुरुष और कुछ महिलायें हैं। बहोत जादा भीड़ लगी है और बोहोत जादा --

बड़ा सा कुछ बना हुआ है जिसे सजावट भी किया गया है कुछ पुरुष महिलाये बैठे है।

ये एक रेलवे ट्रैक है और सामने में ही एक सीढ़ी बनी हुई है रेलवे ट्रैक पर बहुत बड़े-बड़े कंकड़ डाले गए है।

महिला भी खड़ी है जोकि नीले रंग कुर्ता पहने है और सफेद रंग का स्कार्फ बांधे हुई है। सामने मे एक चेयर भी लगी हुई है जो कि बैठने के लिए लगा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे बसे लगी हुई है। सब रंग बिरंगी बसे लगी हुए हैं। उसके सामने में थोड़ा सा एक जगह गड्डा भी है। जिसमें पानी भरा हुआ है।

पीले रंग का टेबल भी वहाँ पर रखा गया है। फूल देखने मे बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक फूल वहाँ पीछे मे खड़ा है सफेद रंग का पैंट शर्ट --